एक बड़ा-सा टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे तेल के डब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये फैक्ट्री जैसी कुछ दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है।

दोनों तरफ से पेड़ दिखाई दे रहे हैं और ऊपर की तरफ बादल दिखाई दे रहे हैं। ये घर लाल कलर का नजर आ रहा है। ऊपर चद्दर लगी हुई है। ।

और सामने की तरफ़ गार्डन में घास दिखाई दे रही है। एक लड़का दिखाई दे रहा है जो सफेद अ फरोज़ी कलर की शर्ट --

एक नदी दिखाई दे रही है। जहाँ पर बीच-बीच में पत्थर दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का खड़ा है जो उन पत्थरों पे खड़ा हुआ है।

कुछ लोग अंदर जा रहे हैं। कुछ बाहर आ रहे हैं। सामने की तरफ बड़ा-सा गेट बना हुआ है नीचे कुछ पौधे लगे हुए नजर आ --

यहाँ पे गाड़ी पे आदमी बैठा है और दो छोटे-छोटे गेट लगे हैं। वहां पे भी दवाइयां लिखा हुआ है।